पूजा करने आते है यह मंदिर काफी पुराना है यह मंदिर बहुत ऊंचाई है यह सभी लोग पूजा करने आ --

पौधे है उसके साइड मे एक बहुत बड़ा घर है और इसका जगह बहुत सुंदर दिखाई देते है यह वाकई मे बहुत सुंदर --

पब्लिक स्कूल भी है जहां पे सभी लोग आते हैं पढ़ाई करते हैं एक आदमी फ़ोटो खिच र --

एक मंदिर है यह मंदिर देखेने मे काफी सुंदर है यहाँ की जगह बहुत सुंदर दिखाई दे रहे है।

यह खाने में बोहोत टेस्टी होते है। इसे बनाने में बोहोत ही मेहनत लगता है। यह खाने में बोहोत स्वा --

एकक जमुई है यहाँ पे हमलोग अपना काम करने आते है।

यह रूम के अंदर अलमारी सीसे मे यह लड़का फोटो खिच रहे है यह सीसे के पीछे खड़े है और अपने मोबाईल से फोटो खिच रहे है पीछे से एक लड़का देख रहा --

यह खेत है यहां हम लोग खेती करते हैं इसके साइड में बहुत घर है इस खेत सामने बहुत घास है यह कच्ची सड़क है इसमें बहुत सारे घास है पानी --